वहां पे एक जाली भी नजर आ रही है ओर मुझे लाल रंग के फूल भी नजर आ रहे हैं।

वहां पर एक मुझे काले रंग का गेट भी नजर आ रहा है और मुझे नीले रंग का वहां पर एक बोर्ड लगा नजर आ रहा है जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है।

जो की पूजा कर रहा है और वहां पर मुझे ज्योत भी नजर आ रही है पैसे पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे बैठे और खड़े नज़र आ रहे हैं एक आदमी पत्थर के ऊपर बैठा है जिसने लाल रंग की कमीज पेहनी है।

और वहां पर एक आदमी दो आदमी मुझे नजर आ रहे हैं जो की गाड़ी को धो रही है बाल्टी नजर आ रही है और मुझे वहां पर एक--

और उसके आगे एक ग गाड़ी भी खड़ी है वो भी सफेद रंग की दिखाई दे रही है एक--

आदमी दिखाई दे रहें हैं और वहाॅं पर मुझे लाईट्स दिखाई दे रहीं हैं बाटर बोटल दिखाई दे रहीं हैं टायर दिखाई दे रहा हैं।

खिड़की नजर आ रही है छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

और मुझे वहां पर तार भी नजर आ रही है लाइटें नजर आ रही है एक डंडा नजर आ रहा है।

और वहां पे सोलर पैनल भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे--

साथ में सड़क या सड़क पर बहुत सारे गाड़ियां नजर आ रही है जो की सफेद लाल रंग की है और एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसका रंग सफेद है।